और उस बाउंड्री के दूसरी ओर कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे --

जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं सामने की ओर एक रामबाबू पराठा का ढाबा बना हुआ है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं सामने की ओर एक व्यक्ति--

यहां सोफ़ा डले हुए हैं जो कि काले कलर के दिखाई दे रहे हैं और बीच में एक टेबल रखा --

जिसमें एक साइड हर कुछ हरा भरा गार्डन दिखाई दे रहा है और कुछ --

जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे है सामने कि ओर एक तालाब बना हुआ दिखाई दे रहा है ।

और बीच में एक रोड गई हुई है और द इस जंगल में पेड़ पौ पर पौधे अ जो --

और ऊपर की ओर सीलिंग में बैलून से सजाय गया है और पंखे लगे हुए हैं और लाइट्स लगी हुई है।

जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं सामने की ओर एक फालफूल की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें काउन्ट --